यह एक पुल के नीचे की तस्वीर है जहाँ पानी भरा हुआ है और आजू-बाजू बहुत ही गंदगी और कचरा दिखाई दे रहा हैं।

यह एक शॉप की फोटो है जहाँ पर बच्चों के खेल खिलौने पिंजरे में जहाँ पर पक्षी मिलते हैं यहाँ पर अलग-अलग टाइप के सुंदर-सुंदर --

वाटरमेलन एप्पल ऑरेंज पोमेग्रेनेट बनाना एक्स्ट्रा जहां पर एक आदमी बैठा हुआ है दो लड़के जो है बैग टांग के लिए हुए है।